यहाँ हमे एक कॉस्मेटिक का दुकान दिखाई पड़ रहा है जहां एक सेल्फ में बहुत सारी चीज़ रखी हुई है।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

साइड में हमें काले रंग की कार भी दिखाई पड़ रही है और एक इंसान भी दिखाई पड़ रहा है एक स्कूटी भी--

यहां बहुत सारे सामान भी लगे हुए हैं और शीशे से भी कुछ सामान दिखाई पड़ रहे हैं कैरेट में भी बहुत सारी चीज रखी हुई है।

साइड में हमें बहुत सारी स्कूटर भी दिखाई पड़ रहे हैं और दूसरे साइड भी कुछ दिख--

हमें यहां एक ऑफिस दिखाई पड़ रहा है जो बहोत सुंदर लग रहा है देखने में सामने एक पिलर भी है जो सफेद रंग का है।

साइड में भी कुछ लिखा हुआ है द वीसा मास्टर भी लिखा हुआ है पीछे एक सोफा दिखाई पड़ रहा है।

ऊपर हमें जूते की बक्से भी रखी हुई है और साइड में बोल भी रखा हुआ है एक जगह हाइट नापने वाला भी रखा हुआ--

हमें यहां एक स्विमिंग पूल दिखाई पड़ रहा है। जहां पे बहोत सारे स्लाइड्स भी दिखाई पड़ रहे हैं।

हमें यहां दो मकान दिखाई पड़ रहे हैं एक मकान का रंग सफेद और नीला दिखाई पड़ रहा है।

तथा दूसरे माकान का रंग हमें सफेद और गुलाबी दिखाई पड़ रहा है। बहोत हरियाली हो रखी है।

हमें यहां नदी दिखाई पड़ रही है जिसमें बहुत सारे नाव रखे हुए हैं नाव--

सामने डी_जे समय जलंधर भी लिखा हुआ है नीचे बहुत सारे डी_जे बॉक्स भी दिखाई पड़ रहे है।

चेयर दो प्रकार के दिखाई पड़ रहे है एक लाल और हरा। यहां हमे कुछ जगह पीले रंग की चेयर भी दिखाई पड़ रही है।

हमें यहां एक पेट्रोल पंप का सीन दिखाई पड़ रहा है जहां छह काउंटर है।

जिसमें एक दो तीन चार पांच छ लिखा हुआ है।